पोस्टर में देवभूमि हिमाचल लिखा है और लिखा है कि कोई भी साथी छूटे ना सुरक्षा टूटे ना।

सामने दुकान में बहुत सारे कपड़े लटके हुए नजर आ रहे हैं।

यह ऑफिस सा दर्शाया जा रहा है।

व्यक्ति खड़े है जिन्होंने ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है।

साथ ही इस तस्वीर के साथ हमें जूस की बोतलें नजर आ रही है और कुरकुरे लेस का पैकेट नजर आ रहा है।

ढाबे के बाहर हमें एक बुलेट नजर आ रही है और एक डस्टबिन भी नजर आ रहा है।

जो सड़क के किनारे खड़ी है साथ ही हमें कुछ व्यक्ति--

साथ ही यहाँं पर एक प्राइवेट बस भी खड़ी है।

साथ ही यहां हमें सीढ़ियां भी नजर आ रही है।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

इस जिम में हमें कुछ लड़के खड़े नजर आ रहे हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं।

इस जिम में आपको जो मशीनें नजर आ रही है इस मशीनों से आप अपने लेग का--

इस तस्वीर में आप देख सकते होकि एक मॉल नजर आ रहा है जो लाल्स एण्ड संस का मॉल है।

और साथ ही मैं आपको बताते चलूँं कि स्विमिंग पूल --

जिसका नाम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है।

जहाँं पर एक गीजर लगा हुआ हैजिसमें आप गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं।